गाइस देख सकते हैं ये सब्जी मंडी है और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को और जबरजस्त लुक देख सकते हैं |

और यहाँ पे बहुत सारा टायर वगैरह लगा हुआ है | देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ काफी जबरजस्त दिखाई दे रहा है और काफी मस्त देख सकते हैं और इसमें काफी सारे --

और काफी मस्त देख सकते है इसमें बच्चे वगैरह --

यहाँ आदमी खड़ा है और यहाँ का भीड़ जबरजस्त दिखाई दे रहा होगा और इसमें ये लोग अपना अपना काम कर रहे है ।

और ये नमाज़ पढ़ रहे हैं और हाथ में --

और यहाँ अपना धोती पैजामा आर आयरन दिलवाता है।

दे रहे हैं और बहुत ही सुपर डुपर लोग दिखाई दे रहा होगा।

भियू काफी कतई-जहर दिखाई दे रहा है और ये बच्चे लोग घर बना रहे हैं

हेलो गाइस देख सकते हैं ये एस.बी.आई. बैंक है और काफी भीड़ मची हुई है ये देख सकते है ।

ये यहाँ पे सब कोई लाइन लगा हुआ है और एक एक कर के आ रहा है ।

और बहुत ही जबरजस्त सीन दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को।

और बहुत ही प्यारा देख सकते हैं |

सारे आदमी ले जाते हैं गाड़ी पे बेचने के --

देख सकते है ये भाई साहब आया है घर दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को |

और ये फोटो ब्रीज से लिया गया है और देख सक --

यहाँ देखिये साइड साइड मे कितना --